ये एक मंदिर की फोटो दिखाई दे रही है जहां पे दो एक --

और अपने दोनो हाथ अपने पैरो पे रखे हुए हैं।

कुछ डिजाइन बनाई हुई नजर आ रही है।

और दो तीन बड़े बड़े पत्थर भी पड़े हुए नजर आ रहे हैं।

यहां पर शूज भी रखे हुए हैं बैलटे भी टंगी हुई है गॉगल्स भी रखे हुए नजर आ रहे हैं।

और बाहर की और कुछ कारे भी खड़ी हुई नजर आ रही--

और कुछ आदमी है जो हाथ जोड़कर हाथ मे अगरबत्तियां लिये खड़े हुए भी दिखाई दे रहे है।

यहां पर बहोत ही सुंदर बैलून लगे हुए दिखाई दे रहे हैं और पीछे की ओर बहोत सारे लोग भी खड़े हुए नजर आ रहे हैं।

पूल के नीचे की साइड एक बड़ी सी नदी भी बनी हुई दिखाई दे रही है।

और उन्हीं के पीछे दो आदमी खड़े हैं जोकि आपस मे बातचीत करते हुए दिखाई दे रहे है।

ये एक किसी हॉल की फोटो दिखाई दे रही है जोकि किसी मूवी के हॉल की फोटो है यहां पे बहोत सारे --

ये किसी बिल्डिंग के बाहर की फोटो दिखाई दे रही है जो की एक सफेद कलर की बनी हुई है।

और सामने की ओर एक झुंड में बहोत सारे अशोक के पेड़ भी लगे हुए हैं जोकि बहोत ही बड़े बड़े दिखाई दे रहे हैं।

ये एक विजय पुस्तक भंडार के बाहर की फोटो दिखाई दे रही है जहां पे बहोत सारी बुक्स टंगी हुई नजर आ रही है।

ये एक बड़ी सी बिल्डिंग बनी हुई नजर आ रही है जिसमें से बहोत सारे वायर्स जाते हुए नजर आ रहे हैं।

पास ही में एक काले कलर का बड़ा सा गमला है जिसमें केले का पौधा भी लगा हुआ दिखाई दे रहा है।